ये एक कपड़े का दुकान है जहां पर सलवार पीस लेहंगा।

नगर पंचायत सोमनाथ में जहाँ छठ पूजा का --

पेड़ -पौधे है एक रास्ता दिख रहा है रास्ते के जस्ट खत्म होते ही पेड़ -पौधे दिख रहे है जो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं ।

ये शाम का टाइम है इसका सन लाइट रुकने वाला है चारों ओर पेड़-पौधे दिखाई दे रहा है बीच में तालाब--